ऊपर आसमान है आसमान नीला है और यहां पर सफेद बादल हैं।

और यही साथ में एक स्विच बोर्ड है स्विच बोर्ड में छे से सात बटन रखे हुए हैं।

प्लेट में कुछ चीजें सजाई हुई है जैसे की रोटी है।

अह सुनहरे कलर के फूल रखे हुए नीचे फर्श है टाइलें लगी हुई है जो सफेद रंग के है।

यहां पर एक पति पत्नी खड़े हुए हैं जो साथ में खड़े हैं और तस्वीर ले रहे हैं फोटो खींच रहे हैं ऊपर कुछ शादी का माहौल सा दिख रहा है।

ब्लैक्स टाइल है और जो ये आदमी है ये कलरफुल --

से डिजाइन किया गया है पीछे पत्ते हैं जो हरे रंग के हैं दो क्रेट्स है जो नीले रंग की है।

रेक्स में अलग अलग प्रकार की अलग अलग तरह की बुक्स रखी हुई हैं।

नीचे भी रैक्स है और सामने ही एक और चेयर रखी है जो कि ब्लैक रंग की है गैस है गैस के ऊपर कुंडी है कुंडी ब्लैक रंग की है और साइड में एक सिंक है।

साईड एक बिसलेरी की बोतल है। ऊपर सैनिटाइजर रखा गया और कुछ डाक्यूमेंट्स है।

नीचे ब्राउन कलर का जो टाइल्स लगी हुई है ऐसे दिखाई दे रहा ग्रीन कलर की बिल्डिंग है।

ये कोई मंदिर का रास्ता है यहां पर बहुत सारे लोग इकठ्ठे हुए हैं यो मैन गेट लग रहा है और यहां पर तारे जैसे दिख रही हैं।